इस खेत में बहुत सरे फसल --

कच्ची रास्ता है । यह रास्ता के --

इस बिल्डिंग में शीशे लगे हुए हैं।

कम्पलीट करेंगे काम को अच्छी तरह से।